यहाँ पर छोटे बड़े बहोत सारे पेड़ है एक आदमी यहाँ पर बैठ के पेड़ लगा रहा है और पीछे एक घर है ।

ये एक बड़ा सा जगह है। वहां पर बहोत सारा गाड़ी रखा हुआ है।

ये एक शॉपिंग काम्प्लेक्स है। यहाँ पर विवो ओप्पो लिखा हुआ है। वहाँ पर बोहत सारा पुतला रखा हुआ है। पुतले के ऊपर कपड़ा पहना है और एक मंदिर है सफेद रंग का।

खड़े हुए है। एक बड़ा सा पेड़ के डाली है। कुछ पत्ते है।

बहोत सारे पंखे लगा हुआ है। कुछ बलिन लगा हुआ है। एक कुर्सी रखा हु --

ये एक सलून है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है।

मंदिर के सामने एक छोटा सा तुलसी का पेड़ है।